और ये सोकेस भी बना हुआ दिखाई दे रहा है उसके उपर भी सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।